और तीन खाट भी पड़ी हुई है। एक आदमी पीले कलर के बलियान में खाट के और कुर्सी पे बैठा है।

इस तस्वीर में हरा धनिया रखा है इस तस्वीर में नींबू भी दिख रहे हैं।

और घर के कोने पर भी एक पेड़ नजर आ रहा है।

और इस घर में कहीं खिड़कियां और दरवाजा लाल कलर का लगाया गया है इस घर पे दो पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पहाड़ के बीच झरना बह रहा है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा काउंटर भी है और बाल्टी भी रखी है।

एक हाथ गद्दे पर धरा हुआ है और सामने लोहे की रॉड भी है।

और कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे रीपस रहे हैं।

इसमें बड़ा काउंटर और तीन कुर्सी रखी है।

इस तस्वीर में लकड़ी से बने गेट नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कार भी दिख रही है कार के पास कुछ पड़ा हुआ भी दिख रहा है।

और एक आदमी टंकी पर हाथ भी धो रहा है इस तस्वीर में ट्रेन भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा सिविंग पूल है इस स्विमिंग पूल में कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

और सीढ़ी भी रखी हुई है सीढ़ी के पास में स्टूल भी है।

इस तस्वीर में काफी हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं।

और एक आदमी सबसे ऊपर किनारे पर खड़ा हुआ है।

खेत के पास में एक पेड़ भी है गोभी पर बड़े बड़े पत्ते भी नजर आ रहे है।